रूबी में कंट्रोल स्टेटमेंट्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न उपयोग करना सीखेंगे इफ स्टेटमेंट एलसिफ स्टेटमेंट एल्से केस स्टेटमेंट्स यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं उबन्टु वर्जन 1204 रूबी 193 इस ट्यूटोरियल के अनुकरण के लिए आपके पास इंटरनेट कनैक्शन होना आवश्यक है
आपको लिनक्स कमांड्स टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर का ज्ञान होना ज़रूरी है
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
शुरू करने से पहले याद रखें कि हमने पहले तत् डिरेक्टरी बनायीं थी
उस डिरेक्टरी पर जाते हैं
और फिर रूबी हाइफेन ट्यूटोरियल कंट्रोल हाइफेन स्टेटमेंट्स अब हम उस फोल्डर में हैं आगे बढ़ते हैं
रूबी में इफ स्टेटमेंट का रचनाक्रम निम्न प्रकार दिया है इफ कंडीशन rubyकोड इंड एक उदाहरण देखते हैं
गेडिट में एक नयी फाइल बनायें जैसे शुरुवाती रूबी ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित है
इसे इफ हाइफेन स्टेटमेंट डॉट आरबी नाम दें
मेरे पास इफ स्टेटमेंट का एक कार्यकारी उदाहरण है
इसको पूरा करते समय ट्यूटोरियल को बीच में रोक सकते हैं और कोड टाइप करें
मैंने इस उदाहरण में एक इफ स्टेटमेंट घोषित किया है
पहले मैं एक लोकल वेरिएबल my num घोषित करती हूँ और इसको 2345 वैल्यू देती हूँ
फिर एक इफ स्टेटमेंट घोषित करती हूँ
इफ स्टेटमेंट में पट्स मेथड घोषित हुआ आउटपुट प्रदर्शित करेगा
अगर my num की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इफ स्टेटमेंट इसे जंचेगा
अगर ऐसा है तो यह वो निर्दिष्ट स्ट्रिंग प्रिंट करेगा
अब टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें रूबी स्पेस इफ हाइफेन स्टेटमेंट डॉट आरबी थे वैल्यू ओएफ my num इस ग्रेटर थान 0
आउटपुट प्रदर्शित होगा
यह आउटपुट सिद्ध करता है कि इफ कंडीशन फिर से ट्रू हुई है
अब आप रूबी में इफ स्टेटमेंट लिखने के लिए सक्षम होने चाहिए
अब आगे if एल्से स्टेटमेंट देखते हैं
एल्से उपयोग करने के लिए रचनाक्रम है इफ कंडीशन रूबी कोड एल्से रूबी कोड इंड एक उदाहरण पर देखते हैं
गेडिट में एक नयी फाइल बनायें जैसे शुरुवाती रूबी ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित है
इसे इफ हाइफेन एल्से हाइफेन स्टेटमेंट डॉट आरबी नाम दें
मेरे पास if एल्से स्टेटमेंट का कार्यकारी उदाहरण है
इसको पूरा करते समय ट्यूटोरियल को बीच में रोक सकते हैं और कोड टाइप करें
मैंने इस उदाहरण में एक if एल्से स्टेटमेंट घोषित किया है
पहले मैं एक लोकल वेरिएबल my num घोषित करती हूँ और इसको 1 वैल्यू देती हूँ
फिर मैं एक इफ स्टेटमेंट घोषित करती हूँ
इफ स्टेटमेंट my num की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो जंचेगा
अगर ऐसा है तो यह वो निर्दिष्ट स्ट्रिंग प्रिंट करेगा
यदि नहीं तो एल्से स्टेटमेंट पर जायें
और यह उस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा जो वहां निर्दिष्ट है
अब टर्मिनल पर जाते हैं और टाइप करें रूबी स्पेस इफ हाइफेन एल्से हाइफेन स्टेटमेंट डॉट आरबी
और आउटपुट देखते हैं
थे वैल्यू ओएफ my num इस लेसर थान 0 आउटपुट प्रदर्शित होगा यह निष्पादित किया हुआ एल्से स्टेटमेंट दिखाता है
अब आप रूबी में if एल्से स्टेटमेंट लिखने के लिए सक्षम होने चाहिए
अब आगे if एलसिफ स्टेटमेंट देखते हैं
एलसिफ उपयोग करने के लिए रचनाक्रम है इफ कंडीशन रूबी कोड एलसिफ कंडीशन रूबी कोड एल्से रूबी कोड इंड एक उदाहरण देखते हैं
गेडिट में एक नयी फाइल बनायें जैसे शुरुवाती रूबी ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित है
इसे इफ हाइफेन एलसिफ हाइफेन स्टेटमेंट डॉट आरबी नाम दें
मेरे पास if एलसिफ स्टेटमेंट का कार्यकारी उदाहरण है
इसको पूरा करते समय ट्यूटोरियल को बीच में रोक सकते हैं और कोड टाइप करें
मैंने इस उदाहरण में एक if एलसिफ स्टेटमेंट घोषित किया है
यहाँ भी मैं एक लोकल वेरिएबल my num घोषित करती हूँ और इसको 1 वैल्यू देती हूँ
फिर मैं एक इफ स्टेटमेंट घोषित करती हूँ
इफ स्टेटमेंट my num की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो जांचेगा
अगर ऐसा है तो यह वो निर्दिष्ट स्ट्रिंग प्रिंट करेगा
अगर यह ट्रू नहीं है तो इसे एलसिफ सेक्शन में जाना होगा
अब यदि my num की वैल्यू 1 है तो यह जांचेगा
अगर यह ट्रू है तो यह उस स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करेगा जो वहां निर्दिष्ट है
my num की वैल्यू न तो 0 से बड़ी है और न ही 1 के बराबर है तो इसे एल्से सेक्शन में जाना होगा
लेकिन चूँकि my num की वैल्यू 1 है तो यह एल्से ब्लॉक में आगे नहीं बढ़ेगा
और ये कंडीशनल स्टेटमेंट से बाहर जायेगा
अब टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें
रूबी स्पेस इफ हाइफेन एलसिफ हाइफेन स्टेटमेंट डॉट आरबी और आउटपुट देखें
थे वैल्यू ओएफ my num इस 1 एंड इस लेसर थान 0
आउटपुट प्रदर्शित होगा
वापस अपनी फाइल पर जाते हैं और my num की वैल्यू को 5 से बदलते हैं
कोड को सेव करें और इसको टर्मिनल पर निष्पादित करें
अतः अब यह इफ कंडीशन को पूरा करता है और वो निर्दिष्ट स्ट्रिंग प्रिंट हुई है
my num की वैल्यू 0 से बड़ी है
अपनी फाइल पर वापस आते हैं और my num की वैल्यू को 5 से बदलते हैं
कोड को सेव करें और इसको टर्मिनल पर निष्पादित करें
इस स्थिति में यह एल्से कंडीशन को पूरा करता है और एल्से ब्लॉक के अंदर पट्स स्टेटमेंट निष्पादित होता है
अब आप रूबी में if एलसिफ स्टेटमेंट लिखने के लिए सक्षम होने चाहिए
अब आगे केस स्टेटमेंट देखते हैं
केस स्टेटमेंट एक विशेष सलेक्शन पर आधारित कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है
इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम केस स्टेटमेंट का रचनाक्रम देखते हैं
केस उपयोग करने के लिए रचनाक्रम160 केस वेरिएबल व्हेन वैल्यू 1 रूबी कोड व्हेन वैल्यू 2 रूबी कोड एल्से रूबी कोड इंड अब एक उदाहरण देखते हैं
गेडिट में एक नयी फाइल बनायें जैसा रूबी के प्रारंभिक स्तर के ट्यूटोरियल्स में दिखाया गया है
इसको केस हाइफेन स्टेटमेंट डॉट आरबी नाम दें
मेरे पास केस स्टेटमेंट का एक कार्यकारी उदाहरण है
इसको पूरा करते समय ट्यूटोरियल को बीच में रोक सकते हैं और कोड टाइप करें
इस उदाहरण में मैंने एक केस स्टेटमेंट घोषित किया है
यहाँ मेरे पास एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो टर्मिनल पर एक प्रश्न प्रिंट करेगा
फिर मैं गेट्स को कॉल करती हूँ जो मानक इनपुट से डेटा के सिंगल लाइन को स्वीकार करेगा
फिर मैं चोंप उपयोग करके इनपुट डेटा के न्यू लाइन कैरेक्टर्स को काटती हूँ
मैं परिणाम डोमेन नामक वेरिएबल को देती हूँ
फिर मैं एक केस स्टेटमेंट घोषित करती हूँ
इसके अंदर मैं एक व्हेन स्टेटमेंट घोषित करती हूँ
यह जांचता है कि वो निर्दिष्ट स्ट्रिंग डोमेन की वैल्यू के समान है या नहीं
पहले यह जांचता है कि डोमेन की वैल्यू यूपी है या नहीं
अगर ऐसा है तो यह उत्तर प्रदेश प्रिंट करेगा और केस स्टेटमेंट छोड़ दें
अगर डोमेन यूपी नहीं है तो यह जांचता है कि डोमेन की वैल्यू एमपी है या नहीं
यदि ऐसा है तो यह मध्य प्रदेश प्रिंट करेगा और ऐसा ही चलेगा
अगर दूर तक कोई समानता नहीं थी तो यह डोमेन की वैल्यू जांचता रहेगा
इस पॉइंट पर यह एल्से स्टेटमेंट का सामना करेगा
अगर उपरोक्त कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं थी
यह रूबी कोड को निष्पादित करेगा जो एल्से घोषणा का पालन करता है
हमारे उदाहरण की तरह यह अंकनाउन प्रिंट करेगा
अब फाइल सेव करें टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें रूबी स्पेस केस हाइफेन स्टेटमेंट डॉट आरबी
Enter थे स्टेट यू लाइव in टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा
टाइप करें यूपी में और आउटपुट देखते हैं
आउटपुट प्रदर्शित होगा उत्तर प्रदेश
आगे पहले की तरह ही रूबी फाइल को फिर से निष्पादित करें
इस समय प्रॉम्प्ट पर टाइप करें केएल और आउटपुट देखते हैं
यह केराला प्रिंट करेगा
आगे एक बार फिर फाइल को निष्पादित करें
इस समय प्रॉम्प्ट पर टाइप करें टिन और आउटपुट देखते हैं
यह अंकनाउन प्रिंट करेगा
यह इसलिए है क्योंकि कोई भी केस संतुष्ट नहीं हुआ था
अतः डिफ़ॉल्ट एल्से स्टेटमेंट निष्पादित हुआ है
आप रूबी में अपना case स्टेटमेंट्स लिखने के लिए सक्षम होने चाहिए
यह आपको इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने उपयोग करना सीखा इफ स्टेटमेंट एल्से कंस्ट्रक्ट if एलसिफ और केस स्टेटमेंट्स नियत कार्य के रूप में रूबी प्रोग्राम लिखें यह यूजर को एक नंबर एंटर करने को कहता है फिर उपयुक्त control स्टेटमेंट उपयोग करें अगर नंबर 2 का गुणज है तो इसे जाँचें
यदि ऐसा है तो प्रिंट करें थे नंबर एंटर्ड इस आ मल्टीपल ओएफ 2 यदि नहीं तो जाचें कि यह 3 का गुणज होना चाहिए
यदि ऐसा है तो प्रिंट करें थे नंबर एंटर्ड इस आ मल्टीपल ओएफ 3 यदि नहीं तो जाचें कि यह 4 का गुणज होना चाहिए
यदि ऐसा है तो प्रिंट करें थे नंबर एंटर्ड इस आ मल्टीपल ओएफ 4 यदि नहीं तो यह प्रिंट करना चाहिए थे नंबर इस नोट आ मल्टपल ओएफ 2 3 ओर 4 निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें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
अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम 160 स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलती है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
इस मिशन पर अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो पर उपलब्ध है
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद